खाने का कुरकुरे रखे गए हैं।

हरा-भरा लेस भी रखे गए है।

जो बेहद ही अच्छी सी लाइटिंग की गई है चर्च --

जो बहुत सारे आदमी लोग फोटो क्लिक कराते हुए नजर आ रहै है चर्च में --

जो आदमी लोग इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं नाव से--

कोई एक मंदिर का नजारा है जहां पे कोई एक मूर्ति है।

जो बहुत सारे मजदूर लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो घर का मरम्मत करते हुए नज़र आ रहे हैं।

बेहद ही अच्छा नजारा देखने को मिल रही है |